छत टीन से बनी हुई है और दीवारों का रंग लाल है।

दुकान के बाहर ढेर सारे समान रखे हुए हैं।

यह फोटो एक फैक्ट्री की है जहां पर बच्चों को कुछ चीजें सिखाई जा रही है।

अधिकांश महिलाओं ने भूरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

इस पिक्चर में कुछ लोग योगा कर रहे हैं।

वहां पे दो खिड़कियां भी हैं।

और दीवार का रंग पीला है।

इस इंसान ने काले रंग का चश्मा पहना हुआ है।

उसके गले में एक लॉकेट है और पीछे ढेर सारा सामान रखा हुआ है।

एक लाइनों में आदमी और दूसरे में औरतें बैठी हुई है।

दरवाजे के बाहर दो स्कूटियां भी रखी हुई है।

कुछ लोहे की सीढ़ियां भी रखी हुई हैं लाल और सफेद रंग की।

फोटो खींचने का समय शाम का है।

ये फोटो एक श शॉपिंग मॉल की है।

कुछ कपड़े फोल्ड करके रैक में भी है।

इस इमेज में काफी सारे घर हैं।

घर के आगे बड़े बड़े पत्थर हैं।

ये जगह अभी बनाई जा रही है।

और पेड़ की छांव में एक बाइक भी खड़ी है।

सर पे मोर पंख भी लगा हुआ है।

इस पिक्चर में एक गैंडे की मूर्ति है।

मूर्ति के आगे एक फुआरा लगा हुआ है।